बिल्डिंग का कलर ग्रीन एवं ब्लैक एवं व्हाइट है।

यहां पे बहुत सारे घड़ी है और यहां पे एक कैमरा भी लगाया गया है।

यहां पे एक गेट भी है।

यहाँ पे एक खिड़की भी बनाई गई है।

यहां पे बहुत सारे कैरेट भी दिख रहे हैं जो कि रेड एवं पीला एवं ऑरेंज है ।

बिल्डिंग के अंदर आदमी भी दिख रहा है जो की वाइट कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

गेट भी है जो की लकड़ी की मदद से बनाया गया है और उसके सामने फूल का झालर भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे लड़कियां एवं लड़के भी दिख रहे है।

यहां पे पिलर भी बनाई गई है तथा जमीन को टाइल्स की मदद से बनाया गया है।

यहां पे बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं और कार भी नजर आ रही है।

बहुत सारे तार भी लगाए गए हैं।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

यह एक गाड़ी दुकान का दृश्य है एवम यहां पे बहोत सारे गाड़ी लगाई गई है।

यहां पे एक टी_वी भी दिख रहा है जो कि वो भी ब्लैक कलर का है।

उसका रंग व्हाइट एवं पिंक है।

के मुंह पे ब्लर किया गया है तथा उसके पीछे रेड कलर का बैलून लगाया गया है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

यहां पे एक आदमी भी दिख रहा है।

यह एक रूम का अंदर का दृश्य है।

यह एक रोड का दृश्य है।